ये एक गली है जहां पर--

सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

ये कुछ एक मेडिकल शॉप दिख रही है जहाँ पर--

सिंगल स्टूल और एक लकड़ी का बड़ा स्टूल भी पड़ा हुआ है।

ये एक बिल्डिंग लग रही है।

सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जो की व्हाइट कलर का है और उस पर स्मारकर से कुछ लिखा हुआ है।

कुछ सूट पहन कर साड़ी पहन कर घूम रही हैं।

ये एक बॉक्स है जो की हल्क ब्राउन कलर का बॉक्स हैं बीच में शीशा भी लगा हुआ है।

जिसमें दो फ्लोर दिख रहे है नीचे फेडरल बैंक लिखा है और साइड में ए_टी_एम लिखा है।

सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं।

जिनकी छत पर ग्रीन कलर और हल्का ब्राउन कलर का पेड़ दिख रहा है।